यह एक बुद्ध भगवान का मूर्ति है।

एक गुलाबी कलर का है और एक पीला कलर का है। ये दोनों केक बहुत सुंदर लग रही है देखने में।

छठ पूजा हिन्दू धर्म का एक मुख्य पर्व है इस दिन भगवान सूर्य और छट माता की पूजा होती है छट पूजा के लिए बिहार राज सबसे मशहूर है इस दिन लोग उपवास कर के रखते है।

अनार संतरा केला सेब --

इसके खाने से बिमारी नहीं होती है।

स्थान है। यहाँ पे एक घंटा टंगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे स्टेचू हैं और एक व्यक्ति यहाँ पे देखने आए हैं और यहाँ पे बहुत सारा बर्फ लगा हुआ है।